ये बच्चे का स्कूल है यहां पे।

पढ़ाई करने के लिए लोग आए हुए हैं और कुछ दिन--

और घर में बहोत सारे लाइट जल रहे है खिड़की है दरवाजा है।

जो कपरे के तरफ देख रहे हैं और--

और एक आदमी है जो लकड़ी ले के खड़े हैं और कुछ है जो बाल रहे हैं।

और यहां पे मोबाइल चार्ज सब चीज दिख रहे हैं।

हर्ष रखे हुए हैं और दो खिड़की जैसे दिख रहा है एक गेट है।

ये ढब्बा है ढब्बा का नाम है चंपारण ढब्बा होंडी मीट हाउस ।

यहां पे लोग खाने के लिए आए हुए हैं और--

यहां पर आज मिस्त्री का काम चल रहा है।

कुछ छान रहे हैं कराही में और अंदर भी बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं बरा बरा तोप सब नजर आ रहा है शिशा के भी है।

शिल्डिंग हैं झंडा यहां पर फहराने के लिए पाईप लगे हुए है और--

एक घर जैसन दिख रहा भी है स्कूल है।

एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है बास से रोकावट के लिए चारो बगल से किए हुए हैं और नीचे पाइप लगे हुए हैं।

भाषण चल रहा है बहोत सारे औरत है लरका लरकी सब है जो बैठे हुए हैं।

और सजाए हुए क्लास रूम को बहुत सारा फील्ड --